और बहुत अच्छे रोज दिख रहे है बस।

बनाया हुआ है टीचर भी दिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं बेन्चेस को लेके बैठे हैं और उनका ड्रेस है ब्लू और पिंक कलर का।